यह डांस सिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों की मम्मी बैठी हुई हैं। यहाँ पर बड़े बैग भी रखे हुये हैं इस पे मैडम डांस सिखा रही हैं। इसपे एक लडका फोटो खीच रहा है। यहाँ बहुत अच्छी लाइटे लगी हुई हैं।

यह दृश्य बहुत ही सुन्दर और दृश्य है।

यहाँ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है। जो लिए हुए है। इसके बगल मे छोटे-छोटे पौधे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग भी घूम --

ये एक रूम के अन्दर का दृश्य है। इसमें कुछ पौधे भी लगाए गए हैं। ये गमले के अन्दर का दृश्य फूल लगे हुए हैं।

बिल्डिंग दीवाल से घेरा हुआ है इसपे कुछ पेड़-पौधे भी दिखाए गए है यह बिल्डिंग सब का --

पेंट से पेंट किया गया है। यहाँ बिजली के खम्बे एवं तार भी दिखाई दे रहें हैं।

इसमें फूल पीले हरे नीले गुलाबी रंग के फूल बेच रहें है। इसमें कुछ बूढ़े बैठके फूल बेच रहें हैये बहुत ही सुन्दर दृश्य --